इम्प्रेशन मोल है यहा पर बहुत सारी कार है दोनों रेड कलर के है एक ओरेंज कलर के है दो वाईट कलर के है एक एस कलर की है कार खड़ी है।

सामने एक पथर है। पथर के साइड में एक जंगल है सामने पथर के पीछे भी एक पथर है और सामने भी एक जंगल है और उसके नीचे बहुत जमीन पर है वहा पे अ बहुत कावू दिख रहा है --

पांच काऊ है एक वाल है एक टिन का घर है और एक पेड़ भी है।

और जेब्रा के पीछे एक नेट का वॉल है और सामने एक पेड़ है दोनों पैर दिख रहे हैं सामने और पीछे नीचे घास जंगल है और नीचे --

यह एक स्कूल हैएक सरस्वती टेम्पल का मूर्ति भी है ऊपर गेट के ऊपर और पीछे एक वाइट एंड रेड कलर कि बिल्डिंग है स्कूल का और सामने दो बैनर भी हैं|

और दाहिने तरफ से देखिए एक किरण है किरण के पास दो रॉड भी है स्पॉटलाइट जल रही है।

बोहोत लोग खरीदने के लिए आये हैं और एक आदमी जो सेल कर रही हैं वो एक माछ को काट रही है। दम-दर कर रही है।